पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर और खम्बा लगा हुआ है जिसमें उपर की तरफ बहुत सारी लाइटे लगी हैं ।

यहाँ पर एक दुकान बनी हुई है उपर की तरफ शटर लगा है जो की खुला हुआ है लाल और सफेद हरे रंग की गुबारे लगे है अंदर --

यहाँ पर एक बोहोत एक बड़ी इमारत है उपर की तरफ गुंब्बत बना हुआ है किला है और दरवाजे लगे हुए है लकड़ी --

बाहर की तरफ लाल रंग की कुर्सी है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने ड्रेस पेहनी हुई हैं गार्ड --

बड़ी फुटबॉल रखी हुई है बैडमिंटन रखा हुआ है जोकि नीले रंग का है और एक में पीले और नीले रंग की पन्नी लगी हुई है चप्पल ले --

इस पर लाल रंग से पेंट हुआ है नि --

यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है और जिसके सिर उपर सर-सर सर के उपर बाल है और --